दैन एक इंसान है जो ग्रे कलर का शर्ट पहना हुआ है ।

सी के कॉस्ट्यूम्स आए एण्ड भाय सी

शॉप पर स्टॉप सेल फिफ़्टी परसेंट ऑफ करके लिखा है इसपे --

बट ये शॉपिंग सेंटर है तनिष्क वेडिंग कलेक्शन मेन वेअर शिव शक्ति स्वीट्स स्टूडियो--

एक योगा सीखा रहे उनको आधे जन मैट पे बैठे है रेड वाले आधे जन ब्लू पे बैठे है।

एक इंसान बाहर बैठा हुआ है जा रहा है एक ऑटो है ।

सीधी के लड़के हैं दो जन एक सामने हैं इनका लगाकर --